टॉवल दिख रहा है गेंदे के फूल बिकते हुए दिखाई दे रहै है।

खूब सारे गेट दिखाए जा रहे है।

पिल्लर्स दिख रहे है लाइट और पंखा भी दिखाया जा रहा है।

पेड़ और आसमान भी दिखाई दे रहा है।

खुब सारी लाइटे और टीबी दिखाई दे रही है।

जिस पर मिथिला बुक सेंटर लिखा हुआ है

इंडियन रेलवेस दिखाई दे रहा है।